चारों तरफ पानी है बीच में रोड है एक डेम टाइप बना हुआ है काफी अच्छी है कच्ची रोड है।

काफी अच्छी इंटेरियल लुक है।

एक लॉन्ड्री शॉप है।

हम देख सकते है छत पे काफी सारे घास और पौधे उग गए है।